यह एक इंडिकैश ए.टी.एम. बैंक है यह इंडिकैश ए.टी.एम. बैंक में ए.टी.एम. से पैसे निकलने के लिए बहुत सारे आदमी आते हैं ।

ये एक मस्जिद है। ये मस्जिद काफी बड़ा है। यह मस्जिद में मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पे नवाज अदा करने के लिए मस्जिद में आते है। ये मस्जिद में ग्रिल से घेरा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे लड़के आए हुए हैं यहाँ एक टेबल पे बहुत सारे बिस्कुट रखा हुआ हैं और बहुत सारे बच्चे लेने के लिए आए हैं ।